सभी लोग कॉपी में लिख रहे हैं।

बगल में एक ए_टी_एम भी है।

शीशे पर गाड़ियों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है।

दीवार पे कुछ मोटिवेशनल लाइन लिखे हुए हैं।

पहाड़ों में बहुत सारे पेड़ और हरियाली दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई है।

कुछ पेड़ भी लगे हुए--

यहाँ एक स्टेज बना हुआ है।

काफी सारी सजावट की गई है।

बहुत सारे केले लटके हुए हैं।

जमीन में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

एक टेबल स्टैंड लगा हुआ है।

पानी सफेद झाग जैसा दिखाई दे रहा है।

ऊपर सचिन होटल लिखा हुआ दिख रहा है।

यह एक पानी का फवारा है।

यह दो बैंक के ब्रांच है।

एक बोर्ड पे इंटरनेट लिखा हुआ है।

ऊपर लाल बोड पे महिंद्रा लिखा हुआ है।

यहां बहुत से लोग कपड़े खरीदने आए हुए हैं।

यहां एक भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांच है।

बड़े अक्षरों में आर पी एस हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यह दिन का समय है।

एक बोर्ड पर पैंथर देश का सर्वोच्चतम सरिया लिखा है।

यहां जमीन पे घास उगी हुई है।

एक दरवाजा का कुंडी दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं।

यहां धूप खिली हुई है।

एक टमाटर में छेद है।

नीले रंग का एक बड़ा घर बना हुआ है।

यहां एक प्लग दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ पत्थर रखे हुए हैं।

एक बांस का डंडा दिख रहा है।

एक ए_सी लगा हुआ दिख रहा है।

टी_एस थ्री लिखा हुआ दिख रहा है।

बाहर कार पार्किंग एरिया में लगी हुई हैं।

एक नाव को पलट के रख दिया गया है।